पर्पल कलर की साड़ी पहनी है एक ने ब्लैक कलर की पहनी है एक ने ब्लू कलर की साड़ी पहनी है पीछे ढेर सारे फ्लावर--

इस इमेज मे दो आदमी दिख रहे हे एक बड़ी सी खिड़की दिख रही हे पर्पल कलर का पर्दा दिख रहा हे रूम मे येलो कलर फ्लावर्स दिख रहे हे ।